ये एक रास्ता है और रास्ते के सामने एक चर्च है।

लड़का ने ब्लू कलर का शर्ट और ब्लू कलर की जींस पहनी हुई है एक बैग बुक है।

नाव के ऊपर पानी के ऊपर जो अपना डुबकी लगाकर पाप साफ कर रहे हैं बहुत सारे इंसान।

ये एक मेडिकल रूम है जिसके ऊपर डायलिसिस का साइन बोर्ड है और सामने पर ग्रीन कलर की डस्टबिन एरिया है और डस्टबिन है लाल कलर का।

और गेट का कलर ब्लू है।

ये एक छोटा सा दुकान है और--

जिस पर दो चार है शू रैक है इसके ऊपर बहुत सारे शू रखे हुए हैं।